बहुत सारे स्वेटर दिखाई दे रहे हैं तथा सब स्वेटर का कलर --

तथा एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

डब्बे रखे हुए हैं तथा ये सब डब्बे कूट के माध्यम से बनाए गए हैं एवं ये सब डब्बे में --

सब गाड़ियों का कलर वाइट --

दुकान भी दिखाई दे रहे हैं तथा एक--

तथा बहुत सारे आदमी खड़े हैं एवं बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

तथा एक चेयर भी दिखाई दे रहा है एवं चेयर का कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है।

यह एक पार्टी समारोह का दृश्य है।